इस इमेज में यहां पर दुकानें दिखाई दे रही हैं जिसपे बैलून का डेकोरेशन किया गया है और बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे अ पीतल के फ्लावर पॉट नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक शोरूम दिखाई दे रहा है और देखिएगा ऊपर फोर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ पेड़ और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा हैं जहां पर कुछ लड़के घूम रहे हैं और कपड़े भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर दुकाने दिखाई दे रही हैं ऊपर बोर्ड पर श्री शिवम फिश एक्वेरियम एंड लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ लोगों की मीटिंग चलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएग यहा पर गेट के पास में कार नजर आ रही है और बारिश का पानी भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक फाउंटेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सड़के दिखाई दे रही है जहां पर कुछ गाड़ी चल रही है और ट्रैफिक सिग्नल भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है और यहां पर एक बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर दुकान दिखाई दे रही है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है उसने टोपी भी लगा के रखी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पर ब्रेनचेस लगी हुई है सामने व्हाइट बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी पर कुछ लोग बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा दरवाजा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा है और बाहर कुछ लोग यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे सामने देखियेगा यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रही है और बाहर यहां पर कुछ लड़के लड़कियां नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे सामने देखियेगा यहां पर एक जैन हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है और बाहर बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही है।

स्कूटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने अम्बे अंबेडकर भवन का पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने देखिएगा रोड दिखाई दे रही है जहां पर कुछ कार और टेंपो चलता हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज पर एक सड़क पर एक कार खड़ी हुई है और यहां पर सब्जी की दुकाने भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा एक गेट दिखाई दे रहा है जिसमें फूलों का डेकोरेशन हुआ है और बाहर दो हाथी भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क क दिखाई दे रहा है और बाहर बेंच पे एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है अंदर एक लड़का खड़ा है और घंटा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है और यहां पर ढेर सारी पब्लिक भी दिखाई दे रही है।